यह अमूल दूध की दुकान है।

बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां यहां पर चुनाई लग रही है मिस्त्री चुनाई कर रहा है और मजदूर मसाले--

यह बहोत सुंदर कपड़ों का माल दिखाई दे रहा है बहोत सुंदर सुंदर बच्चो के कपड़े--

ये भी बहोत सुंदर होटल दिखाई दे रहा है यहां पे लाइटें भी बहोत ढांचसि हुई है।

यहां बहोत सारी मेजे और कुर्सी बिछी हुई है।

यह बहोत बड़ा पाइप सा लगा हुआ है।

सब आदमी अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं बहुत बड़ा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

और यहां पे एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

और वहां सब घरों घर भी नजर आ रहे हैं।